और यहाँ पर बहोत सारी गाय है सफेद और पीली और छोटी -छोटी घास है।

और इसमे बहुत सारी वाइरिंग दिखाई दे रही है कार व्हाइट कलर की है।

यहा कुछ पेपर वाईट है कुछ पेपर ऑरेंज है कुछ पेपर रेड़ है।

यहाँ पर हमें एक साइकिल दिखाई दे रही है जोकि रेड और ब्लैक कलर की है। रेंजर साइकिल है।

पर हमे एक ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ बच्चे खेल रहे है रिसप पट्टी पर और रिसप पट्टी लाल और ग्रीन कलर की है।

और यहा पर कुछ छोटे-छोटे हरे-भरे पैड और व्हाइट कलर की फूल दिखाई दे रही है यहा पर दीवार दिखाई दे रही है जो की गोल्ड कलर से पुती हुई है।

यहा पर हमे एक चाय की दुकान दिखाई दे रही है जिसमे काउन्टर रखा हुआ है।